जिम दिखाई दे रही हैं जिम में एक लड़का दिखाई दे रहा है इसमें रेड कलर का फर्श हो रहे व्हाइट कलर की पट्टी दिखाई दे रही हैं कार्पेट पड़े हुए हैं ग्रीन कलर का और ब्लैक कलर का--

लेडीज ने स्काई ब्लू का सूट पहना हुआ है और पिंक कलर का पर्स ले रखा है और एक जेंट्स जिसने--

बेल और एक बॉक्स भी रखे हुए हैं जैसे इसकी लाइटिंग भी दिखाई दे रही है एक कांटा रखा हुआ है जिसपे सामान रखा हुआ है।

और ये कुछ कैमरा दिखाई दे रहा है हरी घास दिखाई दे रही है मिट्टी दिखाई दे रही है किते किते ज्यादा घास दिखाई दे रही हैं कहीं कम दिखाई दे --

एक रेड कलर की टीन दिखाई दे रही है। उसमें राथी लिखा हुआ है और पीछे पेड़-पौधे बहोत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन कलर के--

ऊपर व्हाइट कलर का डिजाइनर है ग्लोबल बॉन्ड दिखा है येलो कलर में।

और पुरानी सी बिल्डिंग में घनें सारे बॉक्स हैं कुर्सियां पर लाल पीली नीले हरे लते पेहने आदमी बैठे कोई अखबार पढ़े हैं कोई नीचे देखे है।

एक गोल्डन रंग की दिखे हैं मशीन दिखे है सामान पड़े हैं लोग है जगह जगह गाड़ियां का।

नीले रंग का गेट है कुछ पानी सा खिंन्ड रह्या है गेट खुल्ला बड़ा है हल्का सा तूतिया रंग का पेंट दिख्खे है।